दोस्तों यहा देख सकते है अच्छा एक पीक है यहा सब लोग पढ़ाई अक्षर पद रहे है क्लीन है आप देख सकते है की यहा पे काफी सुंदर है हम देखने से ऐसे देखने से हमे अच्छा लगता है।

ये साइन्स का फेअर है कर रहे है पढाई लिखाई कर रहे है एक्सपरीमेंट्स कर रहा है सबसे अच्छा पीके सुंदर है सबसे अच्छा और सुंदर लगता है और सावुंड भी अच्छा और क्लीन ते --

इसलिये हम बोल सकते है सबसे अच्छा और सुंदर का पीक हम देख सकते हैं। इसलिये हम बोल सकते है सबसे अच्छा और सुंदर का पीक --